और प्लेटफार्म में बहोत सारे लोग आते नजर दिखाई दे रहे है प्लेटफार्म नंबर वन --

और फेम लगी हुई है।